और ये ब्लू कलर की शर्ट पहना है घूम रखा है और एक कांच लगा हुआ है।

यहां पर एक झूला है जिसमे बहुत उम्म लोग बैठे है लेडीज बैठी है जो झूल रहा है चैन का झूला है।

एक आदमी कान से फोन लगाए एक जेब में हाथ डाले एक चल रहा है ऊपर बिल्डिंग है।

यहाँ पर एक बिल्डिंग है जो भारतीय उस पर लिखा है भारतीय स्टेट बैंक है और उसके नीचे दुकान है बहुत सारे बाइकें हैं एक ऑटो है।

बहुत सारे उस पर भारतीय स्टेट बैंक लिखा है एक लड़का है जिसका हाथ और बैग दिख रहा है और ऊपर छत --

बहुत सारी रैक है जिनमें किताबें हैं एक लड़का खड़ा हुआ है जो कुछ ले रहा है एक फैन दिख रही है लाइटिंग दिख रही है।